यह एक आर_के कॉफी स्टॉल है।

चाय की दुकान लगाते हैं।

चार बोतल दिख रही है और एक ग्लास दिख रहा है।

यह एक नवयुवक बालक है।

की गाड़ियों की रिपेयरिंग करती है।

यह किसी कॉलेज का एनुअल फंक्शन है।

यहां पर मेकअप एंड हेयरस्टाइल वगैरा यहां पे सेट किए जाते हैं लड़कियों के।

यहां पर एक पेटीएम का स्कैनर भी रखा हुआ है।

और यहां पे एक सोफा रखा हुआ है साम--

उसने ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का आउटफिट पेहना हुआ है।

और एक प्रदूषण जांच केंद्र भी यहां पर उपलब्ध है।

दर भी खुली खुली है।

एक सीन है शहीदों का।

और सारे लोग दौड़ रहे हैं डोल रहे हैं। अपना मनोरंजन कर रहे हैं।

और यहां पर एक कार्ड भी लगा हुआ है और अंदर मोबाइल के कवर भी बहुत सारे रखे हुए हैं।

यहां पर शिवजी की मूर्ति भी रखी हुई है।

यह किसी कार की एसेसरीज हैं।

ऊपर आदमी आराम से बैठ सकते हैं।

सरसों वगैरा को पेरने के काम में आती है।

की बगल में से एक डोरी भी जा रही--

की इलेक्ट्रिसिटी देती है सभी--

उन्होंने पूरी सेफ्टी के लिए वो पहन रखे हैं। किसी ने कैप पहन रखी है किसी ने टोपी पहन रखे हैं।

यह बिस्कुट की फैक्ट्री है।

शैलेंद्र सिंह जिनका नाम है।

दो मीटर लगे हुए हैं।

यह किसी स्कूल के बच्चों का कार्य--

उपकरण जो कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो गाना बजाने इत्यादि सभी में वो सारे यहां पर अवेलेबल होते--

यहां पर लाइटिंग भी लगी हुई है।

एक भेड़ बकरियों के लिए खाना परोसा जा रहा है।

वो कुछ खाना खा रही है।

और एक अच्छा फोटो है ये--

जगह है यहां पे इसने खरीदा है एक।

इलेक्ट्रिसिटी वायर है और एक भैंस भी खड़ी हुई है।

यहां पर लाइटिंग भी लगी हुई है।

बगल में एक इधर के साइड कुर्सी है दो राइट साइड को कुर्सी है रखी हुई हैं।

क्योंकि इस जिसका नाम श्री राम मॉडर्न लाइब्रेरी है।

और यहां पर संसार का मानचित्र भी लगा हुआ है।

बलून भी लगे हुए हैं डिफरेंट तरीके के।

यह किसी बिल्डिंग का फोटो है।

दो एक साइड में खड़े हुई हैं और एक अलग खड़े हुई है।

और धूप निकल रही है।

जो की किसी बंदे ने सेल्फी ली है।

मनी एक्सचेंज नाम की इसने एक टी शर्ट पेहन रखी है।

इसमें लोग अपना आनंद ले रहे है नहा कर।

और पहाड़ भी है यहां पर।

यह एक घर टाइप है उस पर बैनर लगा हुआ--

यह एक लड़के की फोटो है।

जोकि पेड़ अभी बहोत छोटे हैं।

दो तीन खाट भी रखी हुई हैं।